और ऊपर काफी समान है और ये बाहर किसी खाने-पीने के रेस्टोरेंट का बाहर का दृश्य है। जहां पर मोटरसाइकिल नीली चेयर्स लगे हैं और दो है।

यहां पर लोग पोधे खरीद के अपने घर पर लगाते हैं और यहां पर बहुत ही सुंदर--

और यहां पर सामने कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं जहां पर जी पर जो है।

व्हेइकल के समान रखा हुआ हैं यह एक सोफा है अंदर काफी वैरायटी रखी हुईं हैं।

यह एक बच्चों के शॉप है जहां पर काफी अच्छी चीजे हैं जैसे की--